यह एक रेस्टोरेंट है इसके ऊपर ब्लू कलर का आसमान है।

एक स्कार्फ दिखाई दे रहा है जिस पर एक ऊंट का चित्र बना हुआ है।

एक खंभा दिख रहा है और एक पेड़ है।

जिसमें रेड कलर का और व्हाइट कलर का गेट लगा हुआ है।

यह एक स्कूल है जिसमें एक टेबल रखी हुई है दो टैडी बियर हैं।

कुछ शीशे लगे हुए दिख रहे हैं जिनके ऊपर फोन रखे हुए हैं।

यह एक ग्राउंड है जिसमें कुछ व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं।

यह एक मोटर वर्कशॉप है जिसमें कुछ गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं।

पीछे दीवाल पर कलर हो रखा है साइड में एक टेबल रखी हुई है रेड कलर की।

कुछ कुर्सियां हैं। येलो कलर की हैं। रेड कलर की हैं।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं।

दो डस्टबिन रखे हुए हैं एक कुर्सी रखी हुई हैं।

साइड में एक सटर है एक काच की विंडो लगी हुई है और मेज है।

यह एक साइकिल की शॉप है जिसमें बहुत सारी साइकिल हैं।

नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे शिवा नेत्रालय लिखा हुआ है।

यह एक जिम है जिसमें कुछ मशीने रखी हुई है।

यह एक प्रकाश टेंडर्स है जिसके सामने तीन कुर्सियां रखी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कुछ बस खड़ी हुई हैं।

और एक मोटरसाइकिल पर तीन बैठे है।

और सामने लकड़ियाँ रखी हुई हैं।

यह एक शॉप है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है एक कुर्सी रखी हुई है।

नीचे हरी मिर्च लाल मिर्च गोभी अन्य प्रकार की सब्जियां रखी हुई हैं।

यह एक खराब रोड है जिस पर कुछ व्यक्ति और एक महिलाएं खड़ी हुई हैं।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

ऊपर छत में लाइट लगी हुई है और पंखे लगे हुए हैं।

चीकू है सेब है संतरे हैं केले हैं एक साइड में बाल्टी रखी हुई है खाली क्रेट हैं।

यह एक रोड है जिसमें सामने दो बैनर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ विंडो लगी हुई हैं।